यहाँ पर काफी बड़ा मैदान है जो कि कच्चा है यहाँ पर बीच में एक झंडा भी लगा हुआ है पाइप लगा हुआ है।

एक काफी पुराना किला है जिसका काफी ऊंचा बड़ा दरवाजा है इसके अंदर एक आदमी है और इस किले के ऊपर मेहराबे बनी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है।

यहाँ पर कच्ची सड़क हैगी सड़क में दो औरते जा रही है जो पिंक कलर के कपड़े पहने हुए है और सड़क के किनारे एक बाज बना हुआ है।

और कुछ लोग यहाँ काफी लोग मैदान में हैंगे कुछ बैठे हैं खड़े हैं चल रहें हैं और यहाँ पेड़-पौधे लगे हुए हैं बिल्डिंग बनी हुई है।

यहाँ पर फूल की दूकान है यहाँ पर फूल की मालाएं बनी बनाई लटकी हुई है।